कुर्सियाँ पड़ी हैं तीन टेबल पड़ा हैं टेबल पर--

और एल_ई_डी स्क्रीन है जोकर की फोटो लगी है जिसने चश्मा--

प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए पूल बना है और दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म के नीचे की तरफ --

ये एक कपड़े की दुकान है जहां पे--

बहोत अच्छी बाइक और स्कूटी लगी हुई है।

ये एक ऑफिस की फोटो है जिसमें एक लैपटॉप पड़ा--